यहाँ पर बहुत सारे एक मैदान है और मैदान में बहुत सारी भीड़ हो रही है बहुत सारे लोग हैं ।

आ जोकि अ येल्लो कलर की आ जोकि पीले कलर के लाल कलर के और कुछ रंग बीरंगे फूल रखे हुए हैं आ जोकि आटिफिशियल फूल --